क्युकी वो बनाया गया है फूल की ये हरा में ये डाले गये है।

और यहाँ पे भोत सारे लोग है यहाँ पे--

झंडा भी लगाया गया है बाजू की में छोटे पोधे भी है।

पेड़ भी दिख रहे है छोटे पोधे भी है यहाँ पे--

टला गया है पीछे बोहोत सारे यहाँ पर--

ये छे यहाँ पर सामने स्टेप्स है निचे उतर ने के लिए यहाँ पीछे मूर्ति भी है।

ये एक बड़ी सी नदी है और यह पे--

ये आधे पानी में जा रहे मछिलया है।

चटनी भी है और मिर्ची भी है और यह पे चमचे भी है।

हरी भरी यह पे घास उगी हुई है।

ये एक बड़ी सी होटल है रोड साइड --

यह पे इडली वडा यहा पे बनाया जाता है।

और यह पे लोग उतर रहे है।

आज भी उठी हुई है और यह पर बोहोत सारी--

बसा सा पहाड़ है आजू बाजु बोहोत सरे यहा पे--

पेड़ भी दिख रहे है और ये पानी पूरा सफेद है मछलिया है।

रखे हुए ई और यहाँ पे निचे मेट बिछाया गया है।

और यह पे निया भी है और यह पे बोहोत सारे--

और इसे यहाँ पे नु नंबर दिया गया है यहाँ पे जाली मारी गयी और पेपो किया गया और ये टूरिस्म की--

जगह दिखाई दे बोर्ड भी है यह टूरिस्म --

और उसके डोर खुले हुए है और यह पे मिस साफ़ क्र रहजा है।

बाजू में एक दूकान है उसमे झाड उगा है।

ये एक की फेक--

आजू बाजू यहाँ पर बोहोत बड़े बड़े घरा झाडा भी--

बोहोत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ़ घड़ी को यहाँ पे--

लेडी लाइट्स भी है और यहाँ पे फियाना भी दिख रहे है।

यहाँ बाजू में इसकी दूकान है यहाँ बोहोत सारे--

यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है होटल भी है यहाँ पे--

लगाये गये प्लांट्स है बहार गाडी भी है।

यहाँ पर बहार बड़े बड़े झाडा भी दिख रहे है।

ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है और ये गवर्मेंट ऑफिस की तरफ कमांड सेंटर है ये कण्ट्रोल रूम --

और यहाँ पर लाइट के खम्बे है फोकसा लाइट के बेरहा है बड़े बड़े यहाँ पे बोहोत सारे--

बाजू बौन्दरी को जाली मारी गयी है हरी भरी घास उगी हुई है।

दो बच्चे कटते के ऊपर बेठे हुए है बाजू दूकान में स्प्राईट के बोक्सेस है।

केसम के प्लांट्स क मिलते है।

यहाँ पे अन्दर आदमी भी है बहार बोहोत सारे यह पे--

यह पे बोहोत सारे लेडी खम्बे वाईरा भी दिख रहे है।

ये एक बड़ी सी दूकान है यहाँ पे--

यहाँ पे भोत सारे शेल्फ में--

अलग अलग यहाँ पर सामना को रखा गया --

यह पे लाइट का फोकास भी है।

ये एक बड़ा सा ग्राउंड है और यहा पे--

आजू बाजू यहाँ पे बड़े बड़े झाडा भी दिख रहे है।

और उसके ऊपर परफेक्ट लिखा हुआ है और यहां पे आजू बाजू बहुत सारे घरा --

ये एक बड़ी सी मॉल है और यह पर डी_जे --

डिजिटल लाइफ का बोर्ड लगा हुआ है इनचे बोहोत साड़ी दूकान है यह पर बोहोत सारे लोग--

यहाँ पे दूकान के ऊपर फूलो के हारा डालें गए है बाजू में यह मोबाइल शॉप रिचाज भी है यहाँ पर चकना की दूकान भी यहाँ पर है।

और यह पर दो कटोरे रखे गये है टेबल के ऊपर एक में मिर्चिया और एक में मसाले--

यहाँ पे दो लोग बेठे हुए है यहाँ पर बसा सा कार्टून है।

और यहाँ पे बड़े बड़े झाडा भी लगे झाडा भी दिखाई दे रहे है।

ये एक जंगल है बड़ा सा यहाँ पे एक बड़ी सी--

और यहाँ आजू बाजू बोहोत सारे यहाँ पे बड़े बड़े झाडा भी है।

गाडिया है हेल्मेट्स है गाडियों के ऊपर यहां पे--

ए_सी भी लगे हुए है और यह पे--

यह पे मेट डाला गया है।

आइस क्रीम पारलर है यहाँ पे--

पुरे कॉफ़ी चाये मिलती है।

हर किसम का जूस भी मिलता है उपर बोहोत सारी पि_ओ_पि एल_ई_डी लाइट्स लगाये गये--

ये एक पार्क है यहाँ पे बड़े बड़े टाईय रा है।

बड़े बड़े जाड़ा भी दिखरे लाइट के खम्बे भी है वायरिंग भी दिख रही है उसकी यहाँ--

नदी दिख रही है आजो बाजो में--

छोटे बड़े पोधे उठे हुए है फतरे है मछिया ये पूरा हरे कलर का--

ये एक केनरा बैंक है।

कैमरे भी लगे होते है अन्दर साइड यहाँ स्पीकर --